ये ज्यादा पानी में नहीं रह्ती हैं। ये छो टे से गड्डे या तलाब में ये रह्ती हैं। ये गाँव के लोग इसे मारते हैं। ये अच्छा और ताज़ा मछलियाँ रहती है।

यह शादी बर्थडे पार्टी और किसी भी अन्य फंक्शन के लिए यह बुक किया जाता है इस मैरिज हॉल में --

काम शुरु किया गया है। यहाँ पे सारे लेबर लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं। गिट्टी बालू ईटा सीमेंट यहाँ हर एक चीज का प्रयोग किया गया है।

यहां पे बहुत ही अच्छे तरीकों से घर बनाया जाएगा यहां के मिस्त्री बहुत ही अच्छे हैं।

इसलिए यहां पे दूर-दूर से लोग मछलियां लेने के लिए आते हैं।

और बाल काटने के साथ-साथ --

इसलिए यहां बहुत भीड़ होती है।

आने का बस रुकता है।

कोई भी बीमारियां नहीं होती है।

जो जैसा कपड़ा चाहे वो ऐसा ले सकता है।